यहां भगवती मिल्क पार्लर शांति नगर लिखा है।

एक मोटरसाइकिल का रंग लाल है तो एक मोटरसाइकिल का रंग काला यहां पे बिजली पोल भी खड़ा है।

यहां पे एक दो आदमी खड़े हैं यहां पे अंडों का ट्रे भी है।

यहां पे हरियाली है यहां पे अच्छा है।

यह माता देवी का मंदिर है यहां पे मंदिर का रंग सुनहरा तथा गुलाबी है।

यहां पे एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी है।

यहा बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है।

यहां पे दो दो घर बहुत सुंदर हैं।

यहां एक और छोटा मंदिर है जिसमें टाइल्स लगा है।

यहां लकड़ी का दो तीन चेयर भी है।

सामने दीवार पे कई प्रकार की रैक बनाए गए है।